इस फोटो में एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप देखा जा रहा है और एक भैया--

और एक सीरी भी लगी हुई है और एक भैया फोन में बात कर रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेज देखा जा रहा है जहां पर कुछ--

बहोत सारे लोग अपने चेयर पर बैठे हुए हैं।